कलर दिख रहा है कत्थे कलर दिख रहा अंदर गुफाएं है घर में डिज़ाइन बने हुए दिख रही --

चिपके हुए दिख रहे दिवार में कलर दिख रहे ग्रीन कलर पिंक कलर जामुन कलर आसमानी कलर --

नीला कलर दिख रहा है पिंक कलर दिख रहा है नीचे खेतो में ऑरेंज --

डिविल पे ऑरेंज कलर पिंक कलर व्हाइट कलर दिख रहा है उस साइड भी --

मकान दिख रहा है मकान के सामने भी गड़ियां खड़ी दिख रहीं रेड कलर के खम्बे दिख रहे पिंक कलर दिख रहा पेड़-पौधे दिख रहें हैं।

ग्रीन कलर दिख रहा सारी कलर दिख रहा है दिवार में भी दिख रहा है।

बिल्डिंग दिख रही है खंभे दिख रहे हैं ऊपर दो माइक लगे हुए दिख रहे खिड़कियाँ दिख रहे ब्लैक कलर का कुछ --

बादल है वाइट कलर पिंक कलर आसमानी जामुनी कलर दिख रहा है एक --